छोटे छोटे पौधे लगे हुए दिख रहे हैं।

चित्र में मुझे पर्दे का गेट बना टेंट का दिख रहा है।

चित्र में मुझे एक बड़ा सा समुद्र दिखाई दे रहा है।

चित्र में मुझे फ्लॉवर से सजा हुआ डेकोरेशन दिखाई दे रहा है।

चित्र में मुझे ए_सी लगी हुई दिख रही है।

चित्र में मुझे एक आदमी लड़का को गिफ्ट देते हुए दिख रहा है।

चित्र में मुझे ऊपर पोस्टर लगा हुआ दिख रहा है।

कई सारे कलरों के ईंटे बनी दिख रहे है।